और यहां पे कोच भी है सामने और नीचे का फर्स बहुत है--

कार्पट बिछाए गए हैंऔर एक बड़ा सा बॉल दिख रही है सामने।

मैं देख पा रही हूं बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है और बहुत बड़े--

बॉक्स में बहुत सारा सामान रखा हुआ हैऔर सामने सीसी का कांच का बना हुआ है और उसके अंदर केक रखे गए हैं।

बहुत बड़ा पहाड़ है पहाड़ों के अंदर बहुत बड़ा गुफा है गुफा के अंदर एक लड़का जा रहा है और पीछे से एक आदमी --

और आस पास बहोत बड़े बड़े पेड़ भी नजर आ रहे और पत्थरों में पानी गिरने की वजह से पत्थरे पीली पड़ गई हैं।

और टेबल भी रखे हुए है कुर्सी भी है काउंटर भी लगे हुए हैसिडिया भी है ऊपर जाने के लिए।

बड़ा सा यहां पे एक हॉल है जहां पे बहुत ही सुंदर सजावट हुई है।

और बहुत सारे क्रीम है यहां पे और फेस वॉश भी रखे हुए हैऔर बॉडी स्प्रे में रखे हुए हैं परफ्यूम्स है अलग-अलग तरह के ।

और बहुत सारे साबुन भी है शैंपूज भी है बॉडी लोशन भी है अलग-अलग कंपनी की पेंसिल है वगैरह बहू --

सामने मैं देख पा रही हूं कि बहुत बड़ा शोरूम है जिसके अंदर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है।

और यहां पे रोड दिख रही है सामने रोड के किनारे--

किनारे बस से गमले में फूल लगाए गए हैं और एक दूर ट्रक दिख रही है सामने--

सामने मैं देख पा रही हूं कि एक हॉस्पिटल है जिसका नाम लिखा हुआ हैऊपर अंदवा हॉस्पिटल --

और आसपास कुछ लोग हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं।

दो माइक के खड़ी है और एक स्कूटी और उसके सामने बहुत बड़ी दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारे सोफे दिख रहे हैं डाइनिंग टेबल भी रखे हुए है।

सामने मुझे रोड दिख रही है रोड के किनारे एक ठेले पे एक लड़का चाय बेच रहा है और--

और वो चाय बना भी रहा हैऔर सामने बहुत सारे ठेने पे कपे रखा हुआ हैवो मट्टी के और टोस भी हैबिस्किट है।

और डब्बे में नमकीन भी रखा है बोतल में पानी भी रखा हुआ है और इस ठेने पे बड़ा सा पोस्टर लगाया है चाय वाला और उस पे लिखा है।

और अगल-बगल में उसके बहुत बड़ा-बड़ा घर है और सामने बहुत सारे ईंटे नजर आ रहे हैं।

सामने गोडाउन हैऔर गोडाउन से बहुत सारे माल एक ट्रक में डाले जा रहे हैं पिकअप है।

और उसके अंदर बहोत सारा सामान रख दिया गया है और दुकान के बगल में एक और दुकान है जो कि बंद है और सामने रोड दिख रही है रोड पे--

कमरा है कमरे के अंदर बहुत बड़ा टी_वी रखा हुआ है दीवार पे और वहां पे एक चार्जर भी लगा हुआ है ऊपर पंखा लगा हुआ है।

और एक टेबल रखी हुई है और सामने किनारे दीवार के एक कुर्सी रखी हुई है और फर्श दिख रही है सफेद रंग की जो कि टेंस लगी हुई है।

ऊपर बहोत सारी लाइट भी लगी हुई हैं और रूम सफेद रंग से कलर किया गया है।

बहुत बड़ा गोडाउन है जिसमें बहुत सारे आटे रखे हुए हैं बोरिए में।

और यहां पे मशीन भी बहुत बड़ी रखी हुई है जहां पे मशीनों में आटे पीसे जाते हैं और एक बड़ा सा तराजू रखा हुआ है नापने तोलने के लिए।

छोटे-छोटे बल्ब वाले लाइट भी लगे हुए हैं और सामने स्टेज के बहुत सारे सोफे लगे हुए हैंबैठने के लिए वीआईपी लोगों के लिए।

और एक कूड़ा फेंकने वाला डब्बा रखा हुआ हैऔर सामने बेड दिख रही है बेड पे एक लड़की लेटी हुई है और यहां पे बहुत सारे लाइन भी लगे हुए हैंदिन का समय हैं।

सामने मुझे रोड दिख रही है और रोड के किनारे किनारे बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं बहुत घना जंगल है।

और यहां पे खजूर के भी पेड़ दिख रहे हैं और ऊपर आसमान भी दिख रहा है और रोड के किनारे।

बहुत बड़ा चर्च है चर्च में बाहर बहुत भीड़ लगी हुई हैऔर दो फादर हैजो बुक लिए हाथों में और पढ़ रहे हैं और यहां पे सीढ़ी है।

चूड़ा रखा हुआ है झुमके रखे हुए हैं और बहुत सारे मेकअप बॉक्स भी रखे हुए हैं और बहुत चीजें रखी हुई यहां पे छोटे-छोटे पार्टर रखे हुए हैं।

गमलों में फूल लगा हुआ हैऔर अंदर डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं और एक दो पंखे हैं एक नीचे खड़ा है और एक दीवार वाला पंखा है।

नीला और सफेद रंग का दिख रहा है और पहाड़ों पर बहोत सारे जंगल हुआ है घने--

यहाँ बड़े-बड़े पेड़-पौधे निकले हुए हैंऔर हाईवे पे गाड़ियां भी आना जाना कर रही है एक चरपैया है और एक बाइक है।

और दिवालो में बहोत सारे प्राइस रखे हुए हैं और कैलेंडर बना हुआ है और बहोत बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हुए है।

और काफी लोग अंदर आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर गुलाबों से सजाए गए हैं गोबारों से भी सजाए गए हैं।

सामने बहुत बड़ा मुर्गी फार्म है मुर्गी फार्म में बहुत ही छोटे-छोटे मुर्गियां डाली गई है।

जो कि सभी दाने खा रहे हैं और ऊपर रस्सी बांधी गई है और लाइट भी लगाई गई है।

इनके लिए दाने रखे गए हैं और इन्हें बीच-बीच में खाने दिए जा रहे हैं।

बहुत बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और ऊपर लाइट भी लगी हुई हैऔर सामने सोफा लगा हुआ हैबैठने के लिए और जो रिसेप्शन का लगा हुआ है।

अगल बगल में जो दरवाजे हैवो कांच के है।

कंप्यूटर क्लास है जहां पे बहुत सारा कंप्यूटर रखा हुआ है और बहुत सारे कुर्सियां हैं।

और सामने बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है और अगल-बगल में बहुत बड़े-बड़े घर दिख रहे हैं।

बगल में इमेज है वहां पे भी बहुत सारे फाइल रखे हुए हैं कॉपी रखे हुए हैं।